और हरे-भरे पेड़-पौधे है और ग्राउंड में कुछ बच्चे खड़े हुए दिख रहे है कुछ विषय पर चर्चा करते हुए और खाली सड़क भी दिख रही है।

सामने एक न्यू वाइट बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके सामने बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई है वहाँ उल्टा मुँह कर के एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

नंबर वन लिखा हुआ है और बहुत सारे फूल दिख रहे हैं।